रेड ब्लू कलर के बैलून से सजा हुआ है दो टेबल के ऊपर लैपटॉप रखे हुए नजर आ रहे हैं।

सामने व्हाइट कलर की दिवाल दिखाई दे रही है इसमें क्रॉस बना हुआ है ब्लैक कलर का गेट दिखाई दे रहा है।

यह एक मॉल दिखाई दे रहा है छोटे छोटे लैंप जल रहे हैं कुछ स्टेचू बना हुआ है मार्बल के पत्थर के ऊपर--

पीछे स्टैंड दिख रहा है दो ग्लास एंड जग नजर आ रहा है जिस पर लोग बैठे हुए नजर आ रहे है कुर्सी के ऊपर--

सामने एक होटल दिख रहा है भूरे रंग का टेबल नजर आ रहा है लाल कलर के बोर्ड में--

यह एक ऑफिस है सामने भूरे और सफेद रंग का टेबल नजर आ रहा है एक चेयर लगी हुई है जिसमें भूरे रंग का टॉवल ढका हुआ है।

कांच के दरवाजे लगे हुए हैं ब्लैक कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा है।

पेड़ लगे हुए ने नजर आ रहे है छोटे- छोटे फ्लावर पॉट दिखाई दे रहे है ग्राउंड फ्लोर में कुछ कार खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

एक व्हाइट कलर की वैन दिखाई दे रही है।

सामने ढाबा नजर आ रहा है जिसकी दीवार का कलर व्हाईट है छोटी छोटी लाइट लगी हुई हैं लोहे के ग्रील बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

ग्रिल लगी हुई है पीले कलर की।